जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यह बजाने के उपयोग में आते हैं।

यह एक जूते चप्पल की दुकान दिख रहें हैं।

यह दो टूरिस्ट दिख रहे हैं जिसमें एक लड़का और लड़की दिख रहे हैं।

जिसके बाहर कार पार्किंग खड़ी हुई हैं जो की बहुत सारी कार दिख रहे हैं।

छोटे छोटे मनी प्लांटेशन भी करा हुआ है जोकि बहोत ही अच्छा खूबसूरत--

जो की विजय खीर के स्टेशन की दिख रही है यह पटरियाँ बहोत सारी दिख रही हैं।